इस फोटो मे आप देख सकते है एक मूर्ति रखी हुई है मूर्ति चारों और से ढकी हुई है।

इस फोटू में आप देख सकते है मौसम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है हल्का हल्का सा धुप सी निकल रही है हल्का हल्का सा छाँव है तार भी जा रहे है।

इस फोटो में आप देख सकते है एक आसमान आ रहा है सूरज गहरे कलर का सहारा है एक टावर खडा हुआ है।

जिसमे कई तरह के कलर हो रखे है पट्टिया भी लगी हुई है घर के ऊपर तोते कलर का पेंट हो रखा है और हलके-हलके से पेड़ भी आ रहे है बाहर सड़क जा रही है।

इसमे आपको दो बसे दिखाई दे रही है काफी सारा आदमी भी दिखाई दे रहे होंगे एक आदमी जा रहा है नीली बु शर्ट पहने हुए हाथ में बेग लिए रखा है।

गेट के ऊपर एक हाथी की मूर्ति बनी हुई है और मंदिर भी के बराबर में बाहर एक पेड़ लगा हुआ है पीछे भी पेड़ लगे हुए है मन्दिर भी आ रहा है सड़क है वहा --

जिसके अंदर दो तार एक और से दूसरी और जा रही है बराबर में फूलो की मालाएं टंग रही है फूलो का स्टैंड भी रखा है।